आइए खूबसूरत वेडिंग सेट में आपका स्वागत है।

और सभी बच्चे ड्रेस अप मे है एक ड्रेस में है और सबसे बड़ी बात ये सरकारी स्कूल के बच्चे है अच्छा लग रहा--

जैसा लग रहा है बट जो भी रेलवे स्टेशन है अभी--